एक मैदान है मैदान के बाजू मे घर है घरो के बाजू में बहोत सारे पेड़ है तीन लड़के लोग खेल रहे है।

ऊपर छपड़ा बना हुआ है बहुत ही खूबसूरत अच्छे--

ब्लू कलर के टी-शर्ट में एक आदमी खड़ा है बहुत सारी भाजियाँ यहाँ पर हैं।

यहाँ पर कुछ आदमी लोग खड़े हैं।

यहाँ पर एक पेट्रोल पंप है पेट्रोल पंप के बाजू में बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं एक बड़ी ट्रक भी खड़ी है।

बाजू में कुछ घर है बहुत ही अच्छा व्यू दिख रहा है।

रात का टाइम है पूरा अंधेरा है।

शॉप के अंदर दीवार में बहुत सारी बोतलें खी हुई पैकिंग करके।

इस शॉप में बहुत सारे वॉशिंग मशीन रखे हुए हैं पीछे साइड पे फ्रिज है लाइन से वाशिंग मशीन को रखा गया है कलरिंग ।

तीन लड़के लोग टेनिस खेल रहे पीछे घर है।

रोड पे गाड़ी खड़ी है आजू-बाजू में पेड़ भी हैं।

एक शॉप है शॉप के अंदर बहुत सारे वॉशिंग मशीन लाइन से रखे हुए हैं उसके पीछे लाइन से फ्रिज को अच्छी तरह से रखा हुआ है।

यहाँ पर शॉप के अंदर बहुत सारी बुकें लाइन से रखी हुई हैं दीवारों के अंदर कुछ सामान हैं ब सामान रखे हुए लाइन से।

यह एक प्लेटफार्म है पूरा प्लेटफार्म खाली है लाइन से चेयरें रखी हुई हैं सामने प्लेटफार्म पे एक डब्बा जा रहा है ट्रेन का।

एक शॉप है शॉप के अंदर बहुत सारे सामान लाइन से रखे हुए हैं बॉक्स के अंदर बहुत सारे सामान है उसको अच्छी तरह से पैक करके रखा गया है।

बाइक खड़ी है लाइन से कुछ आदमी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं सामने--

दुकानें हैं आजू बाजू में बहुत सारी--

एक गाड़ी है बहुत बड़ी ट्रैक्टर खड़ी है उसको दो आदमी लोग धक्का दे रहे हैं एक आदमी वो गाड़ी के ऊपर खड़ा है आजू-बाजू में रेते हैं कुछ सामान है।

धाबे के बाहर बाइक खड़ी है ढाबे के बाहर।

एक काली कलर की भैंस चारा खा रही है उसके सामने बहुत सारा चारा रखा हुआ है उसको बांधा गया है रस्सी से और वो चारा खा रही है।

दीवार में बहुत सारे ऐसे सामान रखे हुए गाड़ियों के आजू-बाजू में।

पीछे पहाड़े पहाड़ के सामने बहुत सारे पेड़-पौधे लगे हुए हरे-हरे बीच में पानी है नहर है आसमान भी नीला है।

टेबल चाय लगे हुए कुछ आदमी लोग टेबल पे बैठे हैं कुछ खड़े--

शाम का मंजर है बहुत ही अच्छी तरीके से।

ब्रिज बना हुआ है ब्रिज के बाजू में बहुत बड़ा समंदर है आजू-बाजू में पेड़ हैं।

वो अपने बाल दिखा रहा है पोस्ट देख के खड़ा है ब्लैक कलर का शर्ट पहना है उसने उसके पीछे चेयर रखी हुई एक आदमी खड़ा है।

यहाँ पर एक फैक्ट्री है फैक्ट्री में सब लाइन से खड़े हैं।

ट्रक के अंदर बहुत सारा सा सामान लोड करके रखा हुआ है ट्रक के बाजू में बाइक खड़ी है।

शॉप के आजू-बाजू में भी बहुत सारे सामान रखे हुए हैं।

आजू-बाजू में अच्छे से डेकोरेट किया गया है उसके अंदर चेयर टेबल लगे हुए हैं साइड में।

एक बहुत बड़ी शॉप है शॉप के अंदर दीवारों में लाइन से बहुत सारे सामान रखे हुए बहुत सारी बोतलें हैं।

एक लड़का ब्लैक कुर्ते में खड़ा है।

रोड है रोड के आजू-बाजू में बहुत सारे लाइन से पेड़ लगे हुए हैं रोड के बीच में एक बैनर है जिसमें लिखा हुआ है पार्किंग ।

एक शॉप है शॉप के अंदर दीवार में बहुत सारे सामान रखे हुए कुछ गेम के सामान है दीवारों में लाइन से बॉक्स के अंदर रखे हुए हैं।

एक शॉप है शॉप के अंदर दो चेयर रखी हुई है टेबल पे दो लैपटॉप रखे हुए उसके सामने चार चेयर रखी हुई है पीछे गिलास है।

एक ब्लैक कलर की बड़ी बस है बस के अंदर कुछ लोग बैठे हैं एक आदमी बाहर खड़ा होके पोस्ट दे रहा है एक आदमी बस के अंदर जा रहा है।

एक बहुत बड़ी ट्रक रोड पे खड़ी है ट्रक के ऊपर बहुत सा लिखा हुआ है।

एक शॉप है शॉप के अंदर सोफा है आजू-बाजू में टेबल रखी हुए दीवारों में कुछ सामान रखे हुए हैं।